ऊपर सीमेंट का कुछ बना हुआ है जो की चौओ गोल है उसमे लोहे की जालिया लगी हुए है जिसमे संतरे कलर से पोताई हुई है।

यहां पे कुछ पुराने घर है जिसमे दो खिरकिया लगी हुई है और खंभा है जिसमे स्टेज गड़ा हुआ है बहुत सारी लकरी रखी हुई है बीच से रास्ता है ईट कुछ पड़ी हुई है।

पर्वत में पेड़ पौधे है जो की हरे भरे है बहुत सारे सीट टिने वाली घर भी है यहां --

नाव के नीचे आसमानी कलर का पुता है इसमें लाल कलर का भी पुता है नाव के अन्दर आसमानी कलर पुता है बगल वाले नाव मे संतरे कलर नीचे आसमानी कलर फिर आसमान संतरंगी कलर दिख रहा है रेत एकदम साफ हैं जो की बहुत अच्छे दिख रहा हैं पानी लहर मार रहा हैं।

पानी उस की उस तरफ नीला दिख रहा हैं पानी एकदम फड़ - फड़ा रहा हैं।

एक रास्ता है इसके अगल वगल में खूब सारे पत्थर है सीढ़िया बनी हुई है और इस पत्थर के अगल-वगल घास भी उगी हुई है।